हरे खेत दिखाई दे रहे हे बिल्डिंग्स बनी हुई है फिर उसके आगे पीछे खेत है काफी सारे जगह दिखाई दे रही है।

ये एक मछलियो की शॉप है। जिसमे काफी अलग अलग परकार की मछलीया रखी हुए है। और एक जो लाईन से जमी हुए है।